ऐसे केक खाने में बहुत ही लाजवाब लगा करते हैं।

इस दृश्य में दिखाए जाने वाली तस्वीर एक तलाब की प्रतीत हो रही है।

इस दृश्य में दिखाये जाने वाली तस्वीर बुद्ध भागवान के प्रतिमा के साथ प्रतीत हो रहा है।